बड़े दिए दिखाई दे रहे हैं।

पौधे मे बहोत सारे रंग के फूल भी है।

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

हरी हरी घास भी दिखाई दे रही है।

से एसेसरीज लगाई गई है कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

चित्र रोड का है। रोड के--

इस चित्र में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे।

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं नीचे सूखी घास दिख रही है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है कुछ लोग भी--

भी है गणेश जी की मूर्ति भी है।

इन के ऊपर रंग बिरंगी रोशनी आ रही है।

तीनों ने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हैं।

इस चित्र में कुछ लोग झूला झूलते हुए दिखाई दे रहे है।

दो व्यक्तियों ने सरियोंको पकड़ रखा है।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा हैं।

इस के बाहर एक बहोत प्यारी सुंदर क्यारी बनाई गई है।

दुकान के अंदर और बाहर डमी रखी हुई है जिसने कपड़े पहने हुए हैं।

एक बहैत ही सुंदर टी टेबल दिखाई दे रही है।

कार बहोत ही सुंदर सजी हुई खड़ी है।

कार रोड के साइड में खड़ी हुई है।

इस चित्र में बर्तनों की दुकान दिखाई दे रही है।

पेड़ भी है और गाड़ी भी खड़ी हुई है।